इस चित्र में हम देख सक रहे हैं।

और चारों तरफ हम --

जहाँ पर ऑटो और कुछ लोग --

इस चित्र में हम देख सक रहे हैं कि --

जिन टैंटो के अन्दर कुछ लोग हैं।

जिस विद्यालय का नाम श्रीमती शोभा देवी --

इस चित्र में हम देख सक रहे हैं कि --

एक मेन रोड है जहाँ पर साइड में हम --